दिख रही है और नांव की परछाई पानी में दिख रही है और आसमान का रंग देखिये नारंगी है और नीला सफ़ेद है।

सफ़ेद है और अगल-बगल जो घर है जो सफ़ेद रंग की किया गया है और यहाँ पर देखिये छोटी-छोटी खिड़किया भी बनाई गई है और रोशन दान भी बनाया गया है।

नदी के बोर्ड पर लिखा हुआ है कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग तथा--

और यहाँ पर देखिये आसमान का रंग नीला है और यहाँ पर देखिये कुछ छोटे-छोटे पौधे उगे हुए है कुछ घास उगे हुए है और यहाँ पर देखिये मिट्ठी जैसा मैदान है।

सामने देखिये कक्षा में यहाँ पर कुछ लडके और कुछ लडकिया बैठे हुए है जिसमे सभी ने अपने स्कूल का वस्त्र पहने हुए है और यहाँ पर देखिये उनके पास पेन्सिल बॉक्स है।

और ह हरी रंग की साड़ी पहनी हुई है और मास्क लगाया हुआ है काले रंग का और अगल बगल से दीवार है।

और यहाँ पर देखिये जमीन है ओ मिट्ठी की जैसा दिख रहा है और यहाँ पर अगल-बगल देखिये बहोत सारे घने --

पेड़ है और आगे देखिये एक बस खड़ी है जो कि सफ़ेद रंग की है और आसमान का रंग देखिये नीला है।

उगे हुए है बीच में देखिये कुछ मिट्टी जैसा रास्ता भी है और यहाँ पर देखिये लोहे की सिकड़ लगी हुयी है।

इसके सामने नदी है और देखिये इसके सामने मैदान है जो कि कुछ मिट्टी जैसे दिख रहे है यहाँ पर कुछ हरे-भरे घास उगे हुए है।

और ऊपर से देखिये नीचे पानी जा रहा है जो कि देखिये यहाँ पे इक्क्ठा हुआ है पानी और यहाँ पर आसमान का रंग देखिये सफ़ेद रंग--